यह यू.पी.एस.सी. का कोचिंग बोर्ड है।

यह एक पार्किंग लौट है। यहाॅं पर मोटर साइकिल खड़ी होती है।

ये एक कपड़ों की दुकान है।